तो विलुप्त हो चुकी है इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा संभाल कर रखा गया है ताकि ये खराब ना हो जाए यह बहोत पुरानी होती है।

इस फैक्टरी के ही बाहर यहां बहुत ज्यादा कर्टेन्स रखे गए हैं कुछ फोल्ड कर्टेन्स हैं और कुछ --

यह एक बीकानेर का मशीनरी स्टोर है। जहां मशीनों से रिलेटेड पार्ट्स तथा टूल्स मिलते हैं।

यह फोटो किसी सोसाइटी के बाहर से ली गई है इस फोटो में दरवाजे के दोनों तरफ बहोत हरियाली है।

जिनका बुके बनाया गया है और रखे गये है जो बहोत ज्यादा खूबसूरत है।

यह फोटो एक रक्तदान शिविर की है जहां रक्तदान करने पर प्रोत्साहन किया जाता है यहां एक लड़की को --

यहां कप की साइजेस मे भी फर्क है नीचे वाले कप छोटे है तथा ऊपर वाले कप बहोत बड़े कप है इन कप्स की संख्या अधिक होगी --